सामने एक वाटिका दिखाई दे रही है वाटिका बहोत ही बड़ी दिखाई दे रही है।

इसका लोगो रेड कलर का दिखाई दे रहा है।